ये एक स्कूल का सीन है।

ये एक गांव का एक शेड लगता है शेड शेड है और वह उसके लोक्खन का शेड बना हुआ है।